उसके बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक लाइट के--

उसके पीछे एक व्यक्ति गुरुद्वारे से निकलते हुए दिख रहे हैं।

कुछ लोग योगा मैट पे बैठ के योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और--

और उसके नीचे भी काजरिया लिखा हुआ है।

यह तस्वीर रात के समय का है यहां एक लाइट जला हुआ और फैन भी दिखाई दे रहा है।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

उसके स्कूल के वॉल के आगे एक ठेला भी दिखाई दे रहा है।